एक साइड से वजन से वजन दिया जा रहा है यहां पे बहुत सारी गाड़िया रखी हुई है यहां पे --

मेरे लिए भी आए होंगे यहां पे देख सक --

चादर ओढ़े है ऐसा लगता है यहां पे मुझे की एक मूर्ति भी रखी गयी है मूर्ति के पीछे एक लाइट भी जल रही है लेकिन --

इससे और अच्छा हो सकता था लेकिन फोटो को एडिट कर दिया गया है इसलिए थोड़ा --

पीने का पानी भी उपलब्ध कराया गया है ए.टी.एम. का गेट अभी खुला है फ़िलहाल |

बनाया गया है उस तरह डेकोरेट किया गया है पंडाल और आप देख सकते हैं पंडाल जो की बहुत ही विराट बहुत ही खुबसुरत थी |